ये खाली मैदान है। मैदान में काफी सारी घास लगी हुई दिखाई दे रही है। पीछे की तरफ कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे --

और सामने की तरफ एक अंकल दिखाई दे रहे हैं। वो हाथ में कुछ लिए हुए है।

ये एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप पर काफी सारी भीड़ दिखाई दे रही --

लोग अपनी मोटरसाइकिलें लिए हुए हैं।

और सड़क के दोनों तरफ खाली मैदान जैसा दिखाई दे रहा है और वहां पर घास लगी है।

और ये झोपड़ी के शेप में है। सामने की तरफ बाउंड्री बनी हुई दिखाई दे रही है जोकि शायद लकड़ी से बनी हुई है।

रोड के दोनों तरफ काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए दिखायी दे रहे हैं जो कि काफ़ी घने लगे हुए हैं।

जोकि काफी पुराना है किले के पीछे घने पेड़ लगे हुए दिखायी दे रहे हैं।

नीचे ज़मीन पर हरा-हरा कुछ दिखाई दे रहा है।

सामने की तरफ कुछ बुके जैसे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ फूल गुलाबी रंग हैं तो कुछ सफेद --